एक भवन बन हुआ है भवन पे दो विंडो भी बनी हुई दिख रही है। और नीचे की तरफ कोई दीखाई नहीं दे रहा और ऊपर की तरह--

छड़ने क लिए सीढी बनी हुई हे सीडियों पे रेड रंग का कार्पेट भी बिचचा हुआ हे ओर बाहर दो बड़े-बड़े आकार के फूलदान भी रखे हुए हे इन मे फूल लगे हुए हे।

पुल के सामने हरे भरे छोटे छोटे --

तालाब बना हुआ हे तालाब मे आमने -सामने चारों तरफ छोटे-छोटे--

पोद हैं भी लगे हुए हैं ओर हरे भरे दिख रहैं हैं ओर सामने सुन भी दीखाई दे रहा हैं।

जगह है जगह के चारो तरफ पेड़ लगे हुए हैं औ ऊपर --